का अनुसार यख मा जी जु छा हम ते एक कार छ दिखेणी या कार स्लेटी रंग की कार छा।

यख मा जी रोड छ दिखेण लगीं रोड का फंडे मा जी छोटा छोटा बिम कर छन लग्यां पिछाड़ी मा जी हरयां भरयां पहाड़न दिखेणा हरयां भरयां बिट्टा दिखेणा यख फण हरयां भरयां डाला भी छन।

का अनुसार यख मा जी जु छा हम ते एक सफ़ेद स्लेटी रंग की कार छा दिखेण लगीं।

का अनुसार यख मा जी जु छा हम ते एक सफ़ेद रंग की कार कर छा दिखेण लगीं यख मा जी उंडे फुंडे कुछ मकान कर भी छ दिखेण लग्युं।

का अनुसार यख मा जी जु छा हम ते एक दुकान छा दिखेणी यख मा जी सब्जी मंडी वाला कि दुकान छा।